सामने एक स्टेज पे तीन लड़के सफेद कलर के कुर्ते में और सामने दो लड़कियां साड़ियां पहने और गजरा लगाए हुए और एक लड़का हाथ में कुछ --

और गुलाल की एक धुआं करते हुए चारों तरफ से लाइटिंग और अंधेरा हो रखा है पीछे एक चारों तरफ से --

चारों तरफ से कुछ लगे हैं और कुछ सारा मान नीचे डेकोरेशन हो रखी है और उसमें --